मुझे लोहे के पिलर दिख रहे है। एक नीले रंग की टंकी रखी हुई है।

मला ए दिख रही है। कुछ लोग खड़े है।

ये एक जगह का चित्र है जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं।

कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है एक--